दी गई पिक्चर में हम यहाँ पर देख सकते हैं अ दो बहोत ही बड़े अ ब्रिज बने हुए हैं एक बड़ा है खैर एक छोटा है यहाँ पर हम अ ब्रिज के ऊपर जे.सी.बी. को देख सकते है और इसके आस-पास बहोत सारे लोग भी इकट्ठे हैं।

दिए हुए पिक्चर में हमे एक बहुत ही बड़ी नदी दिखाई गई है जहां पर दो ब्रिज बने हुए है एक ब्रिज बहुत ही बड़ा है और एक छोटा है।

हम एक इलेक्ट्रिसिटी के टावर को भी देख सकते है और आसपास हमे हरियाली भी देखने को।

देखो यह पिच्चर मे हमें एक बोहोत ही सुंदर चर्च देखने को मिल रहा है। अंदर की साइट से यहाँ पर हमें बोहोत सारी अ बेंचिस भी नज़र आ रही है जहाॅं पर लोग बैठे हुए हैं।

दी गयी हुई पिक्चर में हम एक चौराहे को देख सकते हैं जहाँ पर एक टावर लगा हुआ है इस टावर के ऊपर बहुत सारी घड़ियां नजर आ रही है।

एक कपड़ा भी बिछा हुआ है और साथ ही साथ हमें बहोत सारे स्टेच्यूज भी देखने को नज़र आ रहे हैं नीचे कि साइड में हमें दो चटाई भी देखने को नज़र आ रही हैं और साइड में कुर्सियां भी लगी हुई हैं।

उसके सामने हमें अ बहुत ही सारे रिक्से खड़े हुए अ नजर आ रहें हैंजो की अ कहीं नहीं जा --

जीसस क्राइस्ट का यहाँ पर हमें अ प्रवेश गेट दिख रहे है और यहाँ पर ये चर्च हमें बहुत ही पुराना नजर आ रहा है।

दी गई हुई पिक्चर में हम यहाँ पर एक कार गैरेज को देख सकते हैं जहाँ पर तीन कार हमें नज़र आ रहीं हैं दो कार हवा में उड़ रही हैं एक पोल की मदद से।

ये पिक्चर में हम यहाँ पर कार गैराज को देख सकते हैं यहाँ पर हमें बहुत सारी कार नजर आ रही हैं जिनके बोनट भी कुछ खुले हुए हैं एक कार वाइट कलर की है एक कार अ ब्लू कलर की है।

जहाँ पे पानी अ बेह रहा है यहाँ पे हमें नीचे के साइड में हमें बहुत ही अलग-अलग प्रकार के लइटिंग्स भी देखने को मिल रही है और असमान हमें खुला नजर आ --